सामने एक मूर्ति दिख रहा है तीन-चार आदमी दिख रहा है।

नीचे दुकान दिख रहा है गेट दिख रहा है।

अगल-बगल पेड़-पौधा दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

जमीन पर आदमी दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है।

एसी दिख रहा है झूमर दिख रहा है।

इस तस्वीर में घर दिख रहा है।

जिसमें दुकान दिख रहा है।

पटना गवर्नमेंट दिख रहा है।

अगल-बगल पेड़ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

सामने सामान रखा हुआ है।

सामने ब्लू ब्लू सामाने दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे है।

चार टेबल दिख रहे हैं ऊपर पंखा दिख रहा है।

दो-तीन गेट दिख रहे हैं।

उस पर डिब्बा पर सामान रखा हुआ है।

सामने घर दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

नीचे जमीन दिख रहा है दो-तीन बाइक लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में पानी दिख रहा है।

जमीन दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक जमीन दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।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

अगल बगल बोहोत सारे सामान दिख रहे है।

इस तस्वीर में जमीन दिख रहा है।

बड़े-बड़े छोटे-छोटे घास दिख रहे हैं।

एक पूल दिख रहा है अगल बगल पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

पानी दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

घर में ढेर सारे कपड़े के दुकान दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

ऊपर एक पंखा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

आदि के बगल में तीन टंकी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़की दिख रही है।

बहुत सामान दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

लाइट बर रहा है नीचे धरती दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

ऊपर लाइट दिख रहे है नीचे सीढ़ी दिख रहा है।

टेबल दिख रहा है दु-तीन कुर्सी दिख रहा --

पॉल देख रहा है एक बस दिख रहा है।

इसमें दो -तीन लाइट लगे हुए दिख रहे हैं।

दुकान में ढेर सारे सामानें दिख रही हैं।

पानी में एक आदमी दिख रहा है अगल-बगल पेड़ -पौधे दिख रहे हैं।

लाइट बढ़ रहा है अगल-बगल पेड़--

इस तस्वीर में पानी दिख रहा है।

अगल-बगल पेड़ पौधा दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक गाड़ी दिख रहा है।

एक औरत दिख रही है मरदाना दिख रही है।

सामने घर दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

इस तस्वीर में जमीन दिख रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक रोड दिख रहे हैं रोड के अगल-बगल पेड़ पौधे हैं।

कुछ समान ऊपर रखे हुए हैं कुछ समान नीचे रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी खड़ा है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में ढेर सारे समाने रखे हुए हैं।

जमीन दिख रहा है जमीन में ढ़ेर सारे सब्जी दिख रहे हैं।

कुछ टमाटर दिख रहे हैं कुछ धनिया पत्ता दिख रहे हैं।

मछली के चित्र बनाए हुए हैं।

सामने एक स्कैनर है भीम यूपीआई --

छोटे-मोटे पेड़-पौधे हैं एक टावर है।

एक टेबल है टेबल पर--

घर में ढेर सारे बच्चे और बच्चियां हैं।

एक हैंगर है हैंगर में कुछ टंगे है।

एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में बैलून से सजाया हुआ है।

बैलन के कलर पिंक है दो-तीन आदमी हैं तीन-चार कुर्सियां हैं ऊपर कई झूमर लगे हुए हैं तीन- चार लाइटें हैं।

परदेव के बगल में एक गेट है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में दो तीसे लगे हुए हैं।

सामने एक प मोबाइल है।

एक कमरा है इस कमरे में ढेर सारे सामान हैं।

बीगल में एक खिड़की है।

नीचे धरती है पानी के तेज लहड़े हैं।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में --

इस तस्वीर में घर जिस घर में सामने दीवार पड़े--

ये टेबल है अगल बगल कुर्सी है एक पेड है वाइट कलर का तकिया है।

अगल-बगल पेड़-पौधे हैं कुछ हरे भरे घास है।

इस तस्वीर में एक जमीन है।

टेंपू है दो-तीन आदमी है।

और आसमान है नीचे धरती है।

एक बेड है नीचे धरती है।

एक डेक्स है उस पर सामान रखा हुआ है।

दो गाड़ियां हैं एक बाइक है।

एक टेबल है अगल-बगल--

तीन- चार बाइक है ऊपर--

में एक एसी कंडेंसर है।

तो काले हैं नीचे धरते हैं।

ढेर सारे समान सरियाएं हैं।

आदमी हैं कुछ बच्चे हैं नीचे जमीन है।

दीवार पर ढेर सारे चित्र हैं ऊपर पंखा है एक पौल है।